यहां पास बहुत सी दुकाने लगी हुई है और साथ में यहां कुछ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं यहां पास बहुत से बड़े-बड़े पहाड़ बने --

यहां पर बहुत सी दुकानें बनी हुई हैं दुकानों के पास में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं कुछ लोग यहां खड़े हुए हैं।

इस फोटो पे मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं चारों ओर लोग खड़े हुए हैं।

चारों ओर कैमरे और लाइट लगी हुई हैं।

यहां पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं और यहां कुछ लोग खड़े हुए हैं।

यहां पास बहोत सी दुकाने बनी हुई हैं दुकानों के पास में बड़े बड़े--

इस फोटो पे मुझे बहुत सारे हिरन दिखाई दे रहे हैं।

घास खा रहे हैं चारों ओर हिरन के लिए पानी रखा गया है चारों ओर बड़े बड़े पेड़ ल--

इस फोटो पे मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

चारों ओर लोग खडे हुए है यहां पास बहोत सी दुकानें बनी हुई है।

यहाँ पर बहोत सी कॉपी किताब रखीं हुई हैं कंप्यूटर र--

दुकानों के पासमें बड़े बड़े पेड़ लगें हुएं हैं।

इस फोटो पे मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं चारों लोग खड़े हुए हैं।

चारों ओर कैमरे लगे हुए हैं और यहां पास कुछ घर बने हैं।

घर के बाहर दो लोग खड़े हुए हैं साथ में यहां एक कार्यालय बनाया गया है कार्यालय के बाहर--

बहोत बड़ा पोस्टर और दरवाजे लगे हुए हैं कुछ सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठे हुए हैं कुछ बाहर--

साथ में यहां कुछ लोग खड़े हुए है। चारों ओर डैम बने हुए है। डैम के पास में बहोत सारा तेजी से पानी बह रहा है।

जहां पाल बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं।

चारो ओर बहोत सारे कैमरे लगे हुए हैं फैक्ट्री के चारो ओर छोटी छोटी घास औ बड़े से पेड़ लगे हुए है।

पर बहोत सारे लोग बाहर के तरफ में बैठे हुए हैं साथ में यहां पर बहोत सारे बड़े-बड़े लाइटें लगाई गई है कुछ लोग यहां --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

और कैमरे लगे हुए हैं साथ में यहां पर बहोत सारी कार खड़ी हुई है।